यहां पर एक टेबल रखी हुई है टेबल पर एक सफेद कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है। यहां पर बहुत सारे टेबल रखी हुई है।

लाल पीला हरा पेंट लगा हुआ हैं।

जो की लाल और नीले कलर से पेंट किए गए हैं।

और सामने सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर सामने कुछ मकान दिखाई दे रहें हैं जिनका कलर सफेद है।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

और उस आदमी के सामने बहुत बड़ी नदी बह रही है और सामने बहुत बड़ी चट्टान भी है जिससे--

और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें--

टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है प्लेट का कलर काला है।

टेबल के पास स्कैनर लगा हुआ है।

यहां पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है।